यह एक बोहोत बड़ा ग्राउंड है। इसमें सूर्य का प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कुछ खरे हैं कुछ बैठे हुए हैं कुछ चल रहे हैं और यहाँ पे बहोत सारा पेड़-पौधा भी है।

और यहाँ पे बहोत सारी कुर्सियां लगे हुए हैं। कुछ कुर्सी पे बैठे भी हुए है और यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है और बहोत सारे फ्लॉवर से सजाया गया है। बहोत सारा लाइट भी है।